यह दृश्य एक ग्राउंड का है यहाँ --

कुछ बच्चे रनिंग ट्रॅक पर रनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और --

अलग-अलग देवी देवताओं की हैं और स्टेज के सामने एक --

खुला ग्राउंड है और ग्राउंड में चेयर डाल रखी हैं जिस पर कुछ महिला दिखाई दे रही हैं --

पार्क भी बना रखा है और पार्क के साइड में छोटे फूल पौधे बो रखे --

यह दृश्य किसी बस स्टॉप का है जहां पर --

यहाँ पर अनेक बड़े-बड़े पेड़ उगाए गए हैं।

लाइटों से सजा रखी है।

प्रोग्राम या फंक्शन का है जहा एक बिल्डिंग को --

बेकरी के बाहर एक व्यक्ति स्कूटी पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

यह दृश्य एक दुकान का है और यह एक कपड़ों की दुकान है और दुकान के अंद --

पर्वतीय क्षेत्र से बहता हुआ जमीन पर आ रहा है और --

इसका पानी बहुत ही ठंडा है।

जहा समारोह स्थल के अंदर अनेक प्रकार के --